जो कि नीले कलर का है आसमान काफी खाली-खाली है और --

लोगों से भरा हुआ है कई सारे लोग वर्कआउट कर रहे--

यहां पे एक शुभम ढाबे का बोर्ड लगा हुआ है।

उसके नीचे एक किचन बनाया गया है जिसमें काफी सारा समान रखा है।